सामने एक चेयर पड़ी हुई है और और एक आदमी खड़ा होकर कुछ देख र--

नीचे बहोत सारा लोहे का बेकार सामान भी रखा है।

ये एक सैलून है जिसका नाम है और ओरा ब्यूटी सैलून --

यह एक मैरिज पैलेस है जहां पर जमीन पर थोड़ा ऑरेंज और मेहरून कलर और येलो कलर का एक कारपेट बिछाया है।

कुछ पेड़ भी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं।

और सामने छोटी सी अलमारी जैसी ड्रॉअर मनी है। कुछ गत्ते का समान रखा हुआ है गत्ते के डब्बों मे--

कुछ खाने-पीने का सामान पड़ा है।

ये एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी में बहोत सारा पानी है।